जिस पर काफी सारे जो है डी_जे रखी हुई है।

पीछे दीवार है बहोत सुंदर है उसके पीछे काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और शाम का--

चेयर है एक आदमी खड़ा है पानी वाली टंकी है।

पैलेस के नीचे काफी सारिया लाइट है।

और सामने काफी सारी जो है बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

फिश मार्केट में एक टेबल पर काफी सारी फिशेज रखी हुई हैं।

क कंसल्टेंसी लिखा हुआ है आ_इ_ल _ट _स लिखा हुआ है।

खेत मे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

पिछे दीवार पर सीनरी लगी हुई है एक आदमी बैठा हुआ है।

कुछ लोग जो हैं पेड़ के पास खड़े हैं जिनमें बच्चे हैं बुढे हैं।

और बादल जो है नीले है आसमान नीला है काफी बड़े बड़े पेड़ हैं।

धूम्रपान करना मना है इसका बैनर लगा हुआ है।